ट्रैक्टर के आस पास बहोत से लोग खड़े हैं।

इस कमरे में दो बेड हैं जिस पे कंबल तकिया रखा हुआ है।

कान मे लाल रंग का शर्ट पहना हुआ एक आदमी दो कस्टमर्स को जुलरी दिखा रहा है जिनमें से एक औरत है और एक आदमी है।

तस्वीर में बहोत सारे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस रेस्टोरेंट का शटर रा ग्रे कलर का है और एक फोल्डिंग दरवाजा लगा है।

और एक खास वाला मैट रखा हुआ है तस्वीर की दाएं ओर में काउंटर रखा है।

मशीन की दाई ओर में स्टील का एक कूड़ेदान रखा हुआ है।

ऊपर छत पे स्टार्स बने हुए हैं।

उसके बगल में दो गमले लगे हुए जिसमें पौधे लगे हैं।

तस्वीर में कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं जो की एक ही तरीके से बनाए गए हैं।

घाट पर भी कुछ लोग हैं और दो ठेले लगे हुए हैं।